जिसमे फुहारे वगैरह बहोत सारे फूल से डेकोरेट किया गया है जिस इसमे एक टेबल भी है।

केबिन भी है जिसमें बहोत सारे मेडल्स चेयर्स और ए_सी पंखे दिखाई दे रहे इसमें डांस एकेडमी वाला एक फोटो भी है।

जस्ट लाइक टी उसमें टी बनाने वालीं मशीन भी है कॉफी बनाने--

यह एक स्टेशनरी की दुकान है जिसमें मार्कर्स पेन टेप

यह एक मस्जिद की फोटो है जिसमें व्यक्तियां नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक भोजनालय की फोटो है जिसमें खाना खाने के लिए--

यह एक ऑफिस की फोटो है जिसमें ऑफिस वर्क के लिए कुछ कंप्यूटर्स और चेयर दिखाई दे रहे हैं उसमें सी_सी_टी_वी कैमरा ए_सी --

यह एक मॉल की फोटो है जिसमें चाइनीस फूड फूड वगैरह मिलते हैं जस्ट लाइक पिज़्ज़ा ।